घर में एक व्यक्ति चलता हुआ भी नजर आ रहा है।

यहां पर बहोत सारे लोग नजर आ रहे हैं।

सामने कि ओर एक सजी हुई टेबल भी पड़ी हुई है।

यहां पर कई लोग पढ़ते और लिखते नजर आ रहे हैं।

पीछे की और एक धार्मिक स्थल भी नजर आ रहा है।

गार्डन के चारों ओर लोहे की जाल लगी हुई दिखाई दे रही है।